और बहुत मस्त दिखाई देते हैं अ देखने में बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है।

चप्पल-ओप्पल पहना हुआ है और ये भी देखने में सुंदर दिखाई दे रहा है।

अ यहाँ पे शांति और मध्य विद्यालय मधेपुरा का है ये।

उत्सुगी विवाह संसा सताधन उध्योग अ सुनोंजन मुझे पूरा।

और यहाँ पे है महिलाएँ सब जा रहा माथे पे लेके कोई चीज।

क्या खाना है यहाँ पे प्लेट मे लगा हुआ है | ये फ्रूटी है दही है ।

यहाँ जो काम चल रहा है यहाँ पे लेंटर होने जा रहा है।

और इधर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बहुत मस्त दिखाई देता है ।

दिखाई दे रहा है अ बहुत बढ़ियां ही बढियाँ दिखाई देते है ये नज़र लग रहा है।